जहानाबाद से टाटा रांची रामगढ़ ये सब जाती है।

किसी तरह का में कोई मीटिंग चल रहा है बिसलेरी का बोतल रखे हुए है लेपटोप है।

ई तो हमारा देखा हुआ है अर्बन मोड़ के पास है।

ये थाना रोड में दिख रहा है । उसके पास काफी थोक और खुदरा वस्त्र का विक्रेता है । बहोत पुराना दुकान है इसको लोग को जानता भी है ।

मछली को अभी साफ कर रहा है दो बन्दे है एक खरीदने वाला इधर खड़ा हुआ है ।

ये किराना दुकान है इसमें छोटे-छोटे मोटे सामान है जरुरत के सारी सामानी चीज रखे हुए हैं।

क्या आइटम्स बने हुए है।

बिरयानी पूरा मेज़ पे लगा हुआ है खाने की तैयारी में है।

वॉकिंग का है। जिम का पूरा ये स्टोर लगाए है एक दो तीन गो वन टू थ्री तीन गो मशीन है नये दो बदले है।

क्या छप्पन भोग करकेयहाँ पे --